यहां यीशु मसीह का प्रतिमा भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके छत गोल दिखाई दे रहे--

यहां तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

फील्ड पे बॉल रखी हुई भी दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे टिशू पेपर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आया रात का समय प्रतीत हो रहा है ।

बहुत सारे फोर व्हीलर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक आदमी सीढ़ी पे खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां हुंडई का लोगो लगा हुआ दिख रहा है।

यहां एक मस्जिद दिखाई दे रहा है यहां बारजा लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक महिला भी दिखाई दे रही है।

यहां मोमबत्तियां जलती हुई भी दिखाई दे रही है।

यहां एक आदमी के हाथ में हेल्मेट भी दिखाई दे रहा है।

इस विद्यालय का गेट बंद दिखाई दे रहा है।

यहां पोस्टर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां चेयर भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक ताला भी दिखाई दे रहा है।

सूर्य के किरणें भी दिखाई दे रहा है।

महिला भी दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी बड़ी-बड़ी चट्टान भी दिखाई दे रही है तथा आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

तौलने वाला मशीन दिखाई दे रहा है।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

एक आदमी पूजा करता हुआ दिख रहा है।

यहां दीवार पे भारतीय मैप का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सारे लोग एक ही कलर के कुर्ता पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।